ई ऑटो में दिखाई दे रहियो है की अठे एक व्यक्ति है जको खुली साइड हु लो न काई ठा काई करियो है गाड़ी के चेक करतो दिखाई दे रहियो है और आ गेराज की तस्वीर नजर आ रही है।

काउंटर के ऊपर दो डब्बो में बिस्कुट भी पड़े नजर आ रहे है बड़े वाले बिस्कुट पड़े हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ पे व्यक्ति भी खड़े नजर --

इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है की यहाँ पर ये व्यक्ति है जो अपनी खुदकी सेल्फी लेता हुआ नज़र आ रहा है और वो सेलोन की दुकान में आया हुआ है।